लोग सड़क से चल फिर रहे हैं।

हॉफ फ़ोटो पार्किंग कार पार्किंग की ली हुई है। इसमें बहुत सारी गाड़ियां पारक की गई हैं।

और इसके साथ एक बहुत बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है और पार्किंग के पीछे--

कुछ लोगों को दवाईयां दे रहे हैं और इन्होंने टेबल के ऊपर बहोत सारी दवाईयां रखी हुई है और यहां नर्स --

यह फोटो एक किचन की ली हुई हैं इसमें किचन में एक शेल्फ बनाई हुई है शेल्फ के नीचे कुछ ड्रॉर्स बने हुए हैं और--

मेरे सामने पंचायत भवन का बोर्ड लगा हुआ है इसमें बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसके आगे--

और कुछ चीज के सामने समान भी दिखाई दे रहा है और इसमें ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यह फोटो हॉस्पिटल के अंदर लिए हुई है इसमें एक--

बोर्ड बहुत बड़ा लगा हुआ है जिसमें कमर से--

इस फोटो में कमरे के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और--

धान ही धान लगा हुआ है खेत मे और दो बड़े बडे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और इसके चारों ओर--

कुछ गड़ियां तेल डलवा रही हैं कुछ गाड़ियां साइड में खड़ी हैं और इसके सा सामने एक जंगल है जो दिखाई दे रहा है और आसमान दिखाई दे रहा है।